जिसको की अभी फूलों से सजाया गया है।

आगे की तरफ से चारों तरफ से लंबी बाउंड्री दी गई है बगल में--

इस दृश्य में मैं बहुत सारी रंग बिरंगे कोटो को देख पा रही हूं।

इस चित्र में मैं बहोत सारे लोगों को देख पा रही हूं।

इस चित्र में मैं एक बहोत बड़ा सा मैदान देख पा रही हूं जिसपे की हरी हरी घास उगी हुई हैं।

आगे की तरफ में एक टेबल देख पा रही हूं जो कि काउंटर है।

सर पे कैप लगा रखा है।

इस चित्र में मैं एक स्टेज देख पा रहीं हूँ जिसपे की कुछ लड़किया नृत्य कर रहीं हैं।